पूरा लाइटिंग से सजावल बा | रक्खल बांसुरी रक्खल बा शहनाई रक्खल बा |

कितना सुंदर व्यवस्था बा। शीशा के अंदर रखल बा। खूब चकाचक लाइटिंग के साथ --

चौतरफा बाउंड्री बा हरा भरा पेड़ बा बहुत अच्छा लगा बा पूरा हरिहर हरिहर घास बा। ग्राउंड में घास बैठल हउए सन --

कोनो खेल के मैदानई ह। सब आदमी जन ओमे दौड़त हाउवन।